ब्लैक रंग का कपड़ा पहन के ये सब को सीखा रहा है।

वहां पे जाने वाला दरवाजा भी है यहां पर बहुत बड़े बड़े खिड़की लगाया गया है सब लोहे का--

यहां पे बहोत सारी छोटे छोटे फूल पौधे लगाए गए--

यहां पे बहुत सारी खाने वाली सब्जी रखी गयी है।

सेब रखा हुआ है उधर किताब रखा हुआ उधर लाइट जल रहा है।

बड़े बड़े भगवान जी की मूर्ति लगाया गया इधर शंकर भगवान की मूर्ति भी है।

लक्ष्मी भगवान के हैं इधर बजरंगबली के है यहां पर कई प्रकार के सजाए गए हैं मूर्ति में त्रिशूल भी हैं।

यहां पे फोम का घर बनाया जा रहा है उधर एक व्यक्ति खड़ा है।

बगल में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति चल रहे हैं उधर एक बड़ा सा घर है।

यहाँ पर बहुत सारा हार्डवेयर का सामान रखे हुए हैं।

कई प्रकार के सामान रखे हुए हार्डवेयर का।

एक लड़की उधर खाना खा रही है यहां पे बहोत सारे चमकने वाले लाइट लगे गए हैं।

यहां पे बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है।

इधर एक बड़ा सा पेड़ है उधर बहुत बड़ा मस्जिद दिख रही है।

ये सामने में छोटे छोटे फूल लगे गए हैं इधर रोड भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे टेंपो दिख रहे हैं जिसमे आदमी एक बैठ रहा--

यहां पे बहुत सारी गाड़ियां दिख रहे हैं।

और पोस्टर लगा हुआ है यहां पे कुर्सी भी लगी हुई है कों टेबल भी लगा है उसके ऊपर एक बोटल भी रखा हुआ है।

उधर बहुत सारी पानी बह रहा है यहां पे बहुत सारा मौसम छाया है।

उसके बगल में रोड भी है यहां पे एक आदमी लड़का लड़की बात कर रहे हैं गाड़ी पर बैठ के।